और यहां पर बहुत सारा सामान रखा हुआ हैं और--

उस व्यक्ती ने एक बैग टांगा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे बैलून भी है।

पौधे वे बेल उगती हैं वो दिखाई दे रही हैं।

यहां पर बहोत सारे--